और एक बड़ी सी चर्च दिख रही हैं।

दो झंडे लगे हुए हैं व्हाइट कलर की कार खड़ी है।

जिसमें पेट पेट्रोल डाला रहे है बहोत सारी गाड़ियां एक ट्रक भी है दो जीप खड़े है एक कार खड़ी हैं।

और अगल बगल बहुत सारी खिड़कियां हैं।

एक बहुत बड़ी ग्रीन कलर की नदी है।

बहुत बड़ा शोरूम है तनिक्स का।

और बाहर पर बहोत सारे कस्टमर खड़े हैं एक ट्रांसपोर्ट --

इस चित्र के अंदर बहुत सारे घर दिख रहे है बहुत सारी घर दिख रही है बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिख रही है और --

और पीछे में कुछ रखी हुई है गोल गोल रोलर में--

इस चित्र के अंदर एक बड़े से तस्ले पर बहुत बड़ी बाम मछली रखी गई है।

पूजा कर रहे हैं हाथ में अगरबत्ती लिए हुए--

जिसमें रोड के किनारे लगा हुआ है रोड पर लाइटिंग लगी हुई है।

गमला रखने पौधा रखने वाली गमले रखे गए हैं।

बहुत लोग बैठ रहे हैं और ऊपर एक फ्रिज बनी हुई है डामर की रोड है।

जिसमें चार हिरन खड़े हुए हैं।

बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं।

बैंक के बाहर बहुत सारे पहाड़ियां रखी गई है ऊपर कांच की गिलास रखे गए हैं।

बोर्ड टंगा हुआ है और ए_सी भी टंगा हुआ है अलमारी भी है।

इस चित्र के अंदर एक स्टेज है स्टेज में बहुत सारे--